यहां एक ऑफिस है और ऑफिस का कलर आपको यहाँ पर गुलाबी और लाल नजर आ रहा है और यहाँ एक गेट बना हुआ है।

और यहां पर दिन का समय हो रहा है कार के आगे यहां पर कचरा पड़ा हुआ है जो पेड़ में से पत्ता गिरा हुआ है वह है।

दो चेयर आपको दिख रहा है यंहा पे लोहे का गेट बना हुआ है यहाँ पर --

ये बाज़ार है यहाँ पे ठेला खड़ा हुआ है इस्पे बहुत बड़ा मछली है और कोई इसका फोटो ले रहा है।

यहाँ एक बाज़ार है और यहाँ पे चीनी का और मिट्टी का बर्तन का--

यहाँ पे स्कूल है स्कूल मे सब बच्चे आ रहे है बच्चों का पूजा कर रहे है यहाँ पे उन्होंने स्कूल का प्ड्रेस पहना हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग खड़ा हुआ है बच्चे के पास पानी का बोतल है।

ये शॉप का गेट दिख रहा है जो ब्लू कलर का है और गेट के पास एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना है।

ये एक बस स्टॉप है जहाँ पर बस खड़ा हुआ है यहाँ पे इन्सान बस के ऊपर चढ़कर जा रहा है।

ओपनिंग होगा यहाँ पर लाइट देख सखते है और फेन है यहाँ पे बहुत सारा लोग है जो कुर्सी पर बैठा है बैलून यहाँ पे लाल पिला और काले कलर का--

कुछ लोग यहाँ पे खड़ा है एक लाल कलर का चेयर रखा हुआ है सामने बहुत सारा लाइट जल रहा है और यहाँ पे रात का समय हो रहा है।

और यहाँ पर एक ट्रेनर है जो ट्रेनिंग दे रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है।

यहाँ पे आपको ट्रेन का पटरी दिखाई दे रहा है इसके पीछे आपको बिजली का टावर नजर आ रहा है घर दिखाई दे रहे है। ईट वाले--

यहाँ पे एक बोट खड़ा हुआ है और पानी का नदी है बहुत बड़ा समुद्र है सूखा हुआ पेड़ नजर आ रहा है जो बोट है वो ब्लू कलर की दिख रही है।

यहाँ पे एक फ्रूट स्टाल लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट रखे हुआ है मेंगो है ऑरेंज है।

एक ब्लैक कलर का बाइक खड़ा हुआ है साइड में यहां पे एक और ब्रिज बना हुआ है जो सीमेंट का है पेड़ नजर आ रहा है दिन का समय है तो आसमान आपको दिखाई दे रहा है।